इस पिचर मे नजर आ रहा है कि ये कोई रोड है। यहा पर बहोत सारे व्यक्ति चल रहे है। यहा पर दो तीन सायकल चल रही है। एक गाड़ी वाला गाड़ी लेके जा रहा है और यहाँ पर बहोत सारे घर नजर आ रहे है।

इस तस्वीर को देखके लग रहा है कि यहां पर कुछ प्रोग्राम हो रहा हे और यहां पर एक पंखा लगा हुआ है। बहोत सारी कुर्सियां भी लगी हुई है।

दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये बोहोत आकर्षित लग रहा है। ये बोहोत अच्छा भी लग रहा है। ये बे --

इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि यहां पर कोई मंदिर है। यहां पर भगवानों की मूर्ति लगी हुई है। यहां पर भजन भी लिखे हुए हैं। यहां पर बहोत आकर्षित लग रहा है।

मंदिर के अंदर मूर्ति दिख रही है। यहां पर चैंबर भी दिख रहा है। और ये भगवानों की मूर्तियां यहां पर लगी हुई हैं। यहां पर झंडे भी लगे हुए हैं ।

इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और ये किसी की शादी का वेन्यू लग रहा है।